एक पेट्रोल पंप है यहां पे बहोत सारे बाइक लगे हुए हैं ऊपर में आसमान है उसमें--

एक ग्राउंड है जिसमें बहोत सारे फूल लगे हुए हैं ऊपर में आसमान है जिसमें व्हाइट व्हाइट कलर के बादल है बहोत सारा--

पेड़ पौधे बहोत सारे हैं जिसके हरे हरे पत्ते हैं रोड है।

ईंटा है बहुत सारा पेड़ है हरे-हरे पत्ते है रोड है ऊपर में बहुत सारा तार है आसमान हैं बादल है।

रोड है इसमें एक गार्डन है व्हाइट व्हाइट कलर का घर है।

एक आदमी खड़ा हुआ हैं पेट्रोल पंप हैं नीचे एक पेड़ है जिसमें हरे रंग के पत्ते हैं।

दो आदमी खड़े हैं ऊपर आसमान है।

बगल में बहोत सारे पेड़ है जिसके हरे हरे पत्ते हैं ऊपर आसमान है जिसमें व्हाइट व्हाइट बादल लगे हुए हैं।